मुझे इस पिक्चर में एक शॉप दिखाई दे रा है।

और शॉप के अंदर में बहुत सारा सामान लोग हैं तरह तरह का।

और ग्रीन कलर का वॉल दिखाई दे रहा है ऊपर में और खिड़की तीन खिड़कियां दिखाई दे रहा।

मुझे इस पिक्चर में दो ठो लड़का दिखाई दे रहे है। एक ठो बैठ के है चेयर में।

ये खड़ा करती है बाल कर रहे--

मुझे इस पिक्चर पर सुंदर सा दीवार दिखाई दे रहा है रेड कलर में।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

बॉल दिखाई दे रहा है रेड कलर का सिल्वर कलर का ब्लू कलर का।

दो ठो दरवाजा दिखाई दे रहा है।

साइड में बहुत सारा जंगल है।

साइड मे बहुत सारा पौधा लोग है।

मुझे इस पिक्चर पर चेयर दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर और रेड कलर में।

सब एक साथ बैठकर हैं।

मुझे इस पिक्चर में बहोत सारा दिखाई दे रहे हो व्हाइट कलर का।

मुझे इस पिक्चर में बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

उस तरफ खिड़की दिखाई दे रहा है।

और इसमें बैठने के लिए डेस्क भी है।

बहुत सारा लाइट पोस्ट दिखाई दे रहा है और सीढ़ी भी है।

और गेट भी दिखाई दे रहा--

और एक डोनेशन बॉक्स भी दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में ब्लैक कलर में।

मुझे इस पिक्चर पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर पर बहुत बड़ा--

बहोत सारा खिड़कियां दिखाई दे रहा बहोत सारा दरवाजा दिखाई दे रहा हैं और दीवार भी दिखाई दे रहा ग्रीन कलर में और पिंक कलर में।

ब्लू कलर का वाइट कलर का और एक टेबल है येलो कलर का।

दो लड़का बैठ के है तीन लड़का खड़ा करके है।

सुन्दर सुन्दर चेन भी दिखाई दे रहा है।

ट्रेन का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। रास्ता का पार पे आदमी भी दिखाई दे रहा है। कोई बैठे है कोई उठ के हैं कोई चल रहा है।

और अंदर में आदमी भी जाती हुई देख रहे हैं।

साइड में बहोत सारा घर लोग भी दिखाई पड़ रहे एक बिल्डिंग लोग--